ग्रीन कलर के पेड़े दिख रहे हैं ब्लैक कलर की दिख रहे हैं एक आसमानी कलर का कुछ रखा हुआ दिख रहा है पेड़े के बगल में नीचे ग्रीन कलर --

बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है उसमे नाम लिखा हुआ दिख रहा है मकान दिख रहा है डोरिया दिख रही पाइप लगा हुआ दिख रहा है।

तीन-चार लड़कियाँ दिख रही हैं तीन-चार जै लड़के दिख रहे हैं व्हाइट कलर का कपड़े पहने हुए दिख रहे हैं कलर उड़ता हुआ दिख रहा है ऑरेंज कलर रेड कलर पर्दे लगे हुए दिख रहे हैं स्टेज है ।

एक लड़का खड़ा हुआ दिख रहा है एक और जेंट्स जाते हुए दिख रहा व्हाइट कलर की लूँगी दिखी रही ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए दिख रहे है।